यहां पे बड़े-बड़े पहाड़ होते है यहां पे जानवर भी होते है और यहां पे हरियाली भी बहुत अच्छी है यहां पे बड़े-बड़े पेड़ हैं।

और क्यारी भी है और रात की फोटो है काफी अच्छी है और डामर वाली ईंटें हैं सड़क बनी हैं।

एक नाइट की फोटो है और यह शायद एक गोदाम है।

यहां पे येलो कलर का एक गोदाम है। उसमें ग्-गै ब्लू कलर के दरवाजे हैं। कई सारे शटर भी हैं। लोहे के गेट भी हैं।

पे कुछ व्हाइट कलर की बोरिया भी है एक खंभा है और यहां पे कुछ पेड़ है।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

और बाहर तीन गमले रखे है जिनमें पेड़ लगे है तीन--

विंडोज है खिड़की ग्रीन कलर के वो छोटे छोटे दरवाजे लगे है शीशे लगे हैं।

और व्हाइट कलर का है यहां पे कुछ खिड़कियां है तीन चार ब्लू --

दो तीन मैरून हैं एक ब्लैक है चार ब्लैक हैं।

और दो जो है बोरे रखे हैं एक वाइट कलर का बोरा है जो बोरी है।

और यहां पे दो तीन खंबे हैं जिसपे ट्रांसफार्मर रखा है येलो कलर का।

यहां पे कुछ लोग हैं यह शायद एक माल है या फिर दुकान पता नहीं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है।

यह एक कंपनी है और इनमें मशीनें हैं इलेक्ट्रॉनिक --

और छोटे छोटे पिलर भी है बड़े काफी अच्छे हैं और काफी सारी मशीनें है यहां पे--

दीवार औऱ जाली वाला गेट है ब्लू कलर का औऱ ब्लू कलर का भी है इसमें लोहे का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही हुआ है।

यहां पे दो हिरण है जोकि बारहसिंगा के नाम से जाने जाते हैं।

यहां पे कीचड़ भी है तथा पिंक कलर की दीवाले भी है।

यह एक पुस्तक की दुकान है यहां पे किताबें मिलती है माता फोटो वोटो लगी होती है।

पे दो फोर व्हीलर है एक फोर व्हीलर का कलर सिल्वर जैसा है तो दूसरी फोर व्हीलर का कलर रेड कलर का है।

यहां पे एक रेड कलर की फोर व्हीलर है उसके ऊपर पन्नी लगी है।

शायद पेंट की जा रही है न्यू बनाई जा रही है पुरानी फोर व्हीलर को।

पे दो लोग भी है जो कि मरम्मत कर रहे है इसकी और वाइट कलर की दीवारें है।

दीवारों पर काफी सारी पेंट हुई है जमीन पर नीचे जल भी है।

यहां पे एक फोर व्हीलर है वाइट कलर की यहां पे एक दो गमले है दो तीन चॉकलेटी कलर के छोटे छोटे।

यहां पे कुछ डमी भी रखे हैं जो कि साड़ी या कुछ सूट पहन रखी है ग्रे कलर का सूट पहन रखा है और एक डमी छोटा है उसपे भी बच्चे के पहन रखे हैं।

दीवाल है नीचे से हल्का बहुते हल्का पिंक कलर की दीवाल है।